कारपेट का रंग हरा है।

लाइट भी लगाया हुआ है।

ये फोटो में मुझे कमरा दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और में भी एक ओर हेलमेट पकड़ा हुआ है।

बहुत ज्यादा बाइक स्कूटी गाड़ी भी रखा हुआ है।

सीलिंग में लाइट भी रखा लगाया हुआ है।

रोड में बहुत ज्यादा स्कूटी बाइक गाड़ी चल रहा हैं।

फ्लावर पॉट को भी रखा हुआ है।

बहुत ज्यादा पेड़ भी उगाया हुआ है।

बाउंड्री भी लगाया हुआ है।

घर के पीछे पहाड़ और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

सामने में पेड़ पौधा भी लगाया हुआ है।

टेबल के ऊपर कप डिब्बा और वॉटर बॉटल रखा हुआ है।

बहुत ज्यादा लाइट भी लगाया हुआ है।

पीछे में बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है।

पीछे में पहाड़ आसमान भी दिखाई दे रहा हैं।

पीछे में रास्ता भी लग बनाया हुआ है।

जिसका बोतल और रुमाल भी रखा हुआ है।

फैन के सामने में तार भी रखा हुआ है।

घर को ब्लर किया हुआ है।

ये फोटो में मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बहुत ज्यादा फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है।

जहां पर गाड़ी और बाइक भी चल रहा है।

दुकान के अंदर बहुत ज्यादा--

सामने में पत्थर कटिंग की भी बनाया हुआ है।

बिल्डिंग का नीचे बहुत ज्यादा गाड़ी रखा हुआ है।

दीवार पर वेंटिलेटर भी लगाया हुआ है।

बहुत ज्यादा प्लास्टिक और फाइल रखा हुआ है।